इस फोटो में हमको डेकोरेशन --

इसमें एक क्‍लॉक टॉवर भी नजर आ रहा है एक इंसान बाईक चलाता हुआ और उसके साथ बहुत सारा सामान और एक स्‍टेच्‍यू स्टेचू भी नजर आ रहा है जो कि शायद शिवाजी जी का है।

और रेड कलर की चेयर्स दिख रही हैं जो कि एकदम नई है शायद से जोकि इनके ऊपर प्‍लास्टिक रेप लगा हुआ है अभी भी और एक --

बगल में एक मैदान है और काफी फूल पत्‍ते भी --

जिसमें कि नंबर्स लिखे हुए हैं थ्री फोर फाईव सिक्‍स सेविन एट नाईन एंड टेन । सेविन एट नाईन टेन वाले में --

इस फोटो में हमें एक बिल्डिंग नजर आ रही है जिसमें कि कुछ बांग्‍ला में शायद‍ लिखा हुआ है।

फेंसिंग इनको कह सकते हैं और एक बेंच है यहाँ पे लगा हुआ एकदम कॉर्नर पे लेफ्ट साइड में --

ये चन्नई सिल्क्स नाम की एक दुकान या फिर शायद से एक मॉल है।

कुछ जानवरों की आकृतियां बनी हुई है और इस बिल्डिंग के कलर ब्‍लू ग्रीन डार्क ब्‍लू लाल रंग भी यूज करा हुआ है और कई सारे लोग यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं हमें।

ये पिक्‍चर किसी ड्राइक्‍लीनर के पास की है यहाँ पे ड्राइक्‍लीनिंग होती है एक आदमी हमें हेलमेट पहने नजर आ रहा है पीछे।

बॉक्स शेप में एक दूसरा रूम या फिर स्ट्रक्चर है आसपास कुछ --

यह किसी बिल्डिंग की फोटो है जो कि --

जिसमें मुगल जो गुम्‍बद यूज करते थे अपने फोर्टस में या फिर किलों में या फिर --

ये कुछ तो अपने हथ्थों में पकड़ कर धो रही हैं ये कुछ मशीन है शायद से कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कोई फैक्ट्री है ये --

ये फोटोग्राफ हमें देखने से तो किसी स्‍टेडियम की लग रही है।

या फिर ये शायद ओपन सिनेमा भी हो सकता है क्योंकि सामने एक बहुत बड़ी स्‍क्रीन नजर आ रही है और कई सारे लोग बैठे हुए दिख रहे हैं।

जिसमें कि कई लोग ग्रुप में बैठे हैं ट्रिओ में बैठे हैं शोलो भी लोग बैठे हैं कुछ खड़े भी हैं।